कुछ महिला है जो बैठी हुई है।

पीछे में भी पुरुष बैठा हुआ नजर आ रहा है।

कार के नीचे परछाई दिख रही है टाइल्स में--

सामने में एक महिला है जिसने साड़ी पहनना--

मास्क लगाया हुआ है और उनके ही बगल में तो पुरुष बैठे हुए बात करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे ढेर सारे मिठाइयां रखी हुई है।

ऑरेंज कपड़े में ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और एक तार खींचा हुआ है ।

पाइप यहां पे सामने ही है।

कुर्सी है और टेबल चेयर काफी सारे लगे हैं।

अंदर एक पुरुष भी दिख रहा है नीले शर्ट पहने हुए और यहां पे लाल रंग की एक कार्पेट बिछी है।

एक ने गुलाबी शर्ट पहना हुआ है और सामने एक पंखा दिख रहा है पीछे में भी एक पंखा दिख रहा है।

दो पुरुष अपने मोटरसाइकिल पे बैठे हुए नजर आ रहे ।

एक टी_वी है जो चल रहा है।

ये पार्टी सब में खाने की जगह है।

लाइट लगी हुई है।

यहां पे कुछ बच्चे और टीचर दिख रहे है।

एक बड़ा सा पाठशाला है।

और नदी के पार में किनारा है पेड़ ओड घास ओस है।

ऊपर सूरज है जो ढल रहा है।

यहां पे मेट बिछी हुई है ।

गमले सब भी दिख रहे हैं ऊपर ऊपर में।

लाइटें भी लगी हैं जो ऑन हैं।

पीछे एक दुकान में लाइट लगी है दो तीन और कुछ पुरुष कुछ महिला दिख रहे है।

ये नदी है और एक बोट दिख रहा है।

के बोट में एक लकड़ी खड़ा हुआ है।

नीचे घांस है और ढेर सारे पेड़ सब है।